यहाँ पर बहुत सारे फोटो फ्रेम रखे हुए है बहुत सारे कप रखे हुए हैं।

एक लड़की खड़ी हुई है बहुत बड़ा मैदान है यहां पे बहुत सारे घर बने हुए हैं। पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पर प्राचार्य लिखा हुआ है एक खिड़की बनी हुई है एक गेट बना हुआ है गेट पर ताला लगा हुआ है।

यहाँ पर बाबा ध्यानीदास महाविद्यालय लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी घांस लगी हुई है।

यहाँ एक ब्लू कार रखी हुई है इसमें पहिये लगे हुए है शीशे लगे हुए है यह बहुत शुन्दर लग रही है | यहाँ पर बहुत शारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बाहर जूते चप्पल रखे हुए हैं बाहर बॉल डली हुई हैं।